समने जो स्टेट बैंक का ए_टी_एम हैं इसमे आदमी जो एंट्री कर रहे जो पैसा निकलन वाला हैं इसमे दो टाइप का एटीएम है एक पैसा निकालने वाला है एक डालने वाला है|

बहुत सारा साइकिल है। साइकिल का शोरूम है और ये छोटे और बड़े दोनों के लिए भी साइकिल उपलब्ध है एजा।